ये चित्र मा हम तैं एक जगह छ दिखेण लगीं जखा हम तैं एक बड़ी इमारत का निशान एक दुकान दिखेण लगीं--

ये चित्र मा हम तें एक समुद्र कु किनारू दिखेण लग्युं यखम हम तें एक नोनियल छ दिखेण लग्युं जे का हाथम एक रसी पकड़ी जे का अगाड़ी एक सरया च लगीं।

एक नौनियाल कुर्सीम छ बैठ्युं जे की दाढ़ी एक दुसरु नौनियाल छ बनोंण लग्युं और पोर हम तें शीसा छ दिखेण लग्यां भितर फणी कुछ टीवी कुछ ठुपरा दिखेण लग्यां जुं का भितर कुछ रख्यां छ ओर पोर कुछ फूल फाल भी लग्यां च।